हॉस्पिटल में क के बाहर काम चल रहा है। लोग खड़े हुए हैं। आसमान दिख --

ये एक शॉपिंग सेन्टर है जो सजा हुआ है फूलो से सजा है बहार बाइक्स खड़ी हुइ हैं।

ये एक पैथोलॉजी लैब एस.आर.एल. डाइगोनेस्टिक्स के बाहर का --

और छतें दिख रही है बहुत सारी।

मास्टर साहेब की दुकान लेखन सामग्री के विक्रेता की जो बंद है उसके साइड मे घर दिख रहा है।